दो पेड़ों के बीच में वह बच्चा खड़ा हुआ है।

ये ब्लैक कलर का है और इस बिल्डिंग में एक बालकनी भी है।

आननी पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं।